यह लाल है पीला है उजला है काला है ।

दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

बहुत सारा खड़ा है । एक बच्चा भी है । एक बच्चा --

रेलवे प्लेटफार्म है रेलवे प्लेटफार्म --

बिजली का तार दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

नीचे चबूतरा बना हुआ है बैठने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है।

इनकम टैक्स का ऑफिस है यहाँ पे ग्रिल का गेट --

और ये लोहे का बना हुआ है मस्जिद के ऊपर तक।

और यहाँ पे बनने के लिए गाड़ी आ --